इसको देखकर लग रहा है कि यह कुछ जैसे कुछ का बगीचा है।

और उसके आसपास बहुत सारे बाइक हैं जो कि रंग बिरंग के हैं और बहुत ही सारे लोग भी दिख रहे हैं।

यह देख कर लगता है की यह गाड़ियों का शोरूम है जो की बहुत सारे है ।

और इसके किनारे में एक बहुत ही बड़ा पेड़ है देख के तो लग रहा है यह बरगत का हो सकता है।

और ये अपने लोहे के बने और उसके नीचे में बहोत सारे कार दिख रहे है जो कि रंग-बिरंगे है।

इसमें एक पिकअप भी दिख रहा है जो कि सिर्फ एक ही है।

जिसमें बड़े-बड़े अक्षरों में दिखाया गया है संघाट फिटनेस द जिम और उसके नीचे में ठीक--

फूलों के बीच में एक तस्वीर खींचा गया।

और इसके नीचे में ठीक बहुत सारे लोग हैं जो कि दो पुरुष दिखाई दे रहे हैं एक बूढ़ी और --